और सामने काउंटर के पास एक लैपटॉप रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसके बगल की जमीन बंजर और धूल वाली है।

इस तस्वीर में एक कंस्ट्रक्शन वर्क को दिखाया गया है।

तथा दूल्हे के पास एक पीले रंग का कुर्ता पहने व्यक्ति मौजूद दिखाई दे रहा है।

क्लासरूम के अंदर बेंच पर कई सारे अलग अलग रंग के बैग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।